चंद्रशेखर आजाद और गाँधी जी और भीम राव अंबेडकर जी लाल बहादुर शास्त्री जी की फोटो हैं लगी हैं।

यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है और वह पिकनिक के लिए आया है और वह छुट्टियों का मजा ले रहा है।

तभी का जो ईनटेलीजेंट बच्चे होते हैं जो उनके अंदर की इच्छा होती हैं वह सभी यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं और सभी लोग आनंद --

यह एक मांस मछली की दुकान है और यहां पर लोग मांस मछली खरीदने आते हैं।

और आधे पैसे दे कर ये मांस वगैरह कटवाते है। जिन्दा जीव को कटवा लेते है। ये बहोत ही बेकार चीज होती है और यहाँ बहोत बेकार लगता है।